यह एक पार्क का सीन दिखाई दे रहा है। हमें काफी सुंदर पार्क दिखाई दे रहा है। इसमे लोग टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पौधे हैं काफी छोटे बड़े है पेड़ भी लगे हैं पौधे भी हैं। काफी सुंदर है सफाई भी है। काफी अच्छा लग रहा है।

बीमारी भी बीमारी भी नहीं होती है कमज़ोरिया भी नहीं आती हैं। ये सेब है कीवी है काफी इ ठेली काफी फल लगे हुए हैं ठेली पर काफी बड़ी ठेली है और तरीके का फल भी है ये काफ़ी लाभदायक है।

यह एक कुर्सी राजाओं महिलाओं राजाओं लोगों को रहती थी पहले राजाओं लोग इस पर वो करते है लेकिन अब काफी सुंदर लग रही है काफी अच्छी है। इस कुर्सी से कई लाभ होते है जेसे की हम शादी में जयमाला की तैयारी करते है तो इस कुर्सी की जरूरत पढ़ती है इसलिए इस कुर्सी से कई लाभ होते हैं और काफी अच्छी सुंदर भी कुर्सी है।

इससे कई इन्टरनेट मॉल इन इनमे हम कहीं भी कुछ भी चला सकते हैं। काफी लाभ है इससे। इससे अम हम कंप्यूटर द्वारा कई चीजें रिचार्ज भी करते हैं। इससे कई लाभ है इस दुकान से हमे।

ये बुक्स की दुकान हैं। ये बुक्स की दुकान काफी लाभदायक है। काफी दुकान भी काफी अच्छी बनवाई है लोगों ने। इस दुकान से हमें कई लाभ होते हैं जैसे कि हम पढ़ने जाते हैं तो हमें --

ना कोई भी इस गाड़ी से काम कर सकते हैं जैसे मंडी में से सब्जी भी ला सकते हैं। आपना कुछ भी समान भी ढो सकते हैं इस गाड़ी से। काफ़ी बड़ी गाड़ी है। ओमेक्समा गाड़ी है। व --

ये हम देख रहे हैं फ़ास्ट फ़ूड की ठेली लगी है। काफी बड़ी ठेली है। एक भैया फ़ास्ट फ़ूड बेच रहे हैं जैसे बर्गर टिक्की अ अम चिल्ली वगेरा कुछ बहोत से मिलते है इस से अम बहुत मतलब फ़ायदा भी रहता है जिससे लोग फ़ास्ट फ़ूड ज्यादा खाते हैं इसीलिए लोग बाहर इनमे ठेली पे लगाते हैं।

जन्मदिन भी मनाते हैं। इन पर लोग बहुत विश्वास भी करते हैं। पूजा भी करते है विश्वास करते हैं। बहुत से लोग इन पर अ इनका जन्मदिन मनाते हैं। इनके लिए मंदिर भी बनवाते हैं।

हम देख रहे हैं जैसे की पुल के नीचे से एक रेलवे लाइन निकाली गई है। इस र रेल से भी काफी सुविधाएं और हाँ ये हमारे ध्यान-ध्यान से देख रही है। ये हमारे ऊपर से बिजली लाइन भी निकली है। जिससे हमे बिजली मिलती है और सरभर गावं में बिजली आती है। इससे --